इस इमेज में हमें बहुत सारी बेंचे रखाई रखी दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं।

और सामने लड़कियाँ हैं जो कुछ डांस कर रही हैं जो ग्रीन कलर के पत्ते ऊपर किए हुए हैं औ --

इस इमेज में हमें एक उम्म पलंग रखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसपे हमें पत्ता गोभी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस इमेज में हमें दो तीन कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे आदमी --

इस इमेज में हमें बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है। यह ड्रम - डैम है जिसमें पानी आ रहा है।

अह इस इमेज मे हमे एक सामने मे घर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है और --

इस इमेज में हमें ए मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है किसी ने तीन-चार गड्ढे किये हैं जिससे ये मिटटी ऊपर आयी है।

और एक खटिया सी डली हुई है और ये झोपड़ी सी दिख रही है और ये आदमी चप्पल पहने हुए है।

डाले हुए है। पीछे अच्छी डेकोरेशन है। येलो कलर से सजाया हुआ है और रेड कलर के फूल और भी लगाए गए है। अच्छा लग रहा है।

इस इमेज में हमें एक कार दिखाई दे रही है और एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है जो कैपो उल्टे --

है और एक व्हाइट कलर की शर्ट पेहने हुए है जीन्स पहने --

जो जूंड़े टाइप के बनाए हुए हैं उनमे क्लिप लगाए हुए हैं रेड कलर के।

उ दिख रही है। जिसमे सभी आदमी आ जा रहे हैं। अंदर हमे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है और बोहोत सारे आदमी हैं। यहाँ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है। पहाड़ बोहोत बड़ा है।